ए.टी.एम. है और यहाँ पर हम दो महिला हैं जोकि आपस में बात कर रहीं हैं और पीछे वो व्यक्ति खड़े रहे हैं उ ऐसे अन्दर देख रहे हैं जाने के लिए --

देख रह हैं ये जो तस्वीर है ये तस्वीर एक गार्डन की है जहां पर की इस गार्डन में लोग घूमने के लिए आते हैं।

औररर जैसा की हम देख रहे हैं यहाँ पर यह जगह भी काफी बड़ी है और पीछे पेड़ जो है काफी ऊंचे-ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पर बीच में लाइट वगेरा भी लगी है और जिस तरह से --

पीछे जो ये जगह है ये भी काफी बड़ी जगह बनी हुई है।

हम देख रहे हैं जामनी कलर है और यहाँ पर गेट है जो कि छोटा गेट है पीछे जंगल में बनी हुई है।

और जैसे की हम देख रहे हैं और इस तरह से और कलर --

देख रही हैं बल्कि जो गिटार और पेन कुछ पेन तबला वगेरा जूते ही मिलते हैं। का सारा सामान मिलेगा और ये गिटार जो सबसे अच्छा होगा गिटार बजाये जाते हैं जैसे की यहाँ पे ढोल वगेरा --